सी और C में रिलेशनल आपरेटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे रिलेशनल आपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे लेस थान से कम जैसे आ ब ग्रेटर thanसे अधिक जैसे आ ब लेस थान ओर इक्वल टो से कम या बराबर जैसे आ ब ग्रेटर थान ओर इक्वल टो से अधिक या बराबर जैसे आ ब इक्वल टो के बराबर जैसे आ ब नोट इक्वल टो के बराबर नहीं जैसे a ब इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 1110 उबुंटू में जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 एक परिचय के साथ शुरू करें
रिलेशनल ऑपरेटर्स इंटीजर और फ्लोटिंग प्वाइंट संख्याओं की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं
रिलेशनल ऑपरेटर्स का उपयोग करके बनाये गए एक्सप्रेशंस फलसे के लिए 0 और ट्रू के लिए 1 देते हैं
अब मैं एक सी प्रोग्राम की मदद से रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझाऊंगा
मैंने प्रोग्राम पहले ही बना लिया है
अतः मैं एडिटर खोलूँगा और कोड समझाऊँगा
सर्वप्रथम हम दो वैरिएबल आ और ब घोषित करते हैं
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट उपयोगकर्ता से आ और ब की वेल्यू प्रविष्ट करने के लिए कहता है
यह स्कैन्फ स्टेटमेंट आ और bवैरिएबल्स के लिए इनपुट प्राप्त करता है
हम ग्रेटर थान ऑपरेटर का अध्ययन करेंगे
यह ऑपरेटर ऑपरेटर के दोनों ओर दो ऑपरेंड की तुलना करता है
यह ट्रू प्रदर्शित करता है यदि आ ब से अधिक है
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट केवल तभी एक्जीक्यूट होता है जब उपर्युक्त कंडिशन ट्रू हो
यदि उपर्युक्त कंडिशन फलसे है तो यह छूट जाता है
नियंत्रित करने के लिए फिर अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है
हम अब लेस थान ऑपरेटर का अध्ययन करेंगे
यह भी ऑपरेंड की तुलना करता है
यह तब ट्रू प्रदर्शित करता है जब आ ब से कम हो
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट तब एक्जीक्यूट होता है जब उपर्युक्त कंडिशन ट्रू हो
अन्यथा यह छूट जाता है
कोड को यहाँ तक एक्जीक्यूट करें
सर्वप्रथम निम्न पर कमेंट करें
टाइप करें सेव पर क्लिक करें
मैंने अपनी फाइल relationalसी नाम से सेव की है
अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर निम्न टाइप करें जीसीसी स्पेस रिलेशनल डॉट सी स्पेस o स्पेस रेल एंटर दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें rel और एंटर दबाएँ
मैंने आ के लिए 8 और ब के लिए 3 प्रविष्ट किया है
आउटपुट प्रदर्शित होता है 8 इस ग्रेटर थान 3 आप आ और ब की विभिन्न वेल्यू के साथ इस कोड को एक्जीक्यूट करने का अभ्यास कर सकते हैं
कोड पर वापस आएँ
यहाँ से कमेंट हटाएं और इसे यहाँ रखें
अब हम लेस थान ओर इक्वल टो ऑपरेटर का अध्ययन करेंगे
यह ऑपरेटर ऑपरेटर के दोनों ओर दो ऑपरेंड की तुलना करता है
यह ट्रू प्रदर्शित करता है यदि आ ब से कम या के बराबर है
प्रिंटफ स्टेटमेंट एक्जीक्यूट होता है यदि उपर्युक्त कंडिशन ट्रू है
यदि उपर्युक्त कंडिशन फलसे है तो यह छूट जाता है
फिर कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है
इसके बाद ग्रेटर थान ओर इक्वल टो ऑपरेटर पर आते हैं
यह आ और ब की तुलना करता है और ट्रू प्रदर्शित करता है यदि आ ब से बड़ा है या उसके बराबर है
यदि कंडिशन ट्रू है तो यह प्रिंटफ स्टेटमेंट एक्जीक्यूट किया जाएगा
अब कोड को यहाँ तक एक्जीक्यूट करें
सेव पर क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
मैं आ के लिए 8 और ब के लिए 3 प्रविष्ट करता हूँ
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है 8 इस ग्रेटर थान ओर इक्वल टो 3 अब शेष कोड पर वापस आएँ
यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट हटाएं
और यहाँ से
हम अब इक्वल टो ऑपरेटर का उपयोग करेंगे
इसे डबल इक्वल चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है
यह ऑपरेटर ट्रू प्रदर्शित करता है जब दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के बराबर होते हैं
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट तब एक्जीक्यूट होता है जब aब के बराबर हो
यदि नहीं तो कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है
उसी प्रकार हम नोट इक्वल टो ऑपरेटर का उपयोग करेंगे
यह ऑपरेटर ट्रू प्रदर्शित करता है जब दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट तब एक्जीक्यूट होगा जब aब के बराबर नहीं है
प्रोग्राम की समाप्ति पर आते हैं
रिटर्न 0 सेव पर क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
आ के लिए 8 और ब के लिए 3 प्रविष्ट करें
आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है 8 इस नोट इक्वल टो 3 इस प्रकार हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे कार्य करते हैं
इस कोड को इनपुट के विभिन्न सेटों के साथ एक्जीक्यूट करने का प्रयास करें
अब C में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना काफी सरल है
यहाँ सिंटैक्स में कुछ अंतर हैं
मैंने पहले ही C में कोड बना लिया है
यहाँ C में रिलेशनल आपरेटर्स के लिए कोड है
ध्यान दें कि हेडर भिन्न है
इसके अलावा हमारे पास यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट है
C में आउटपुट स्टेटमेंट काउट है
और C में इनपुट स्टेटमेंटcin है
अतः इन भिन्नताओं के अलावा दोनों कोड काफी समान हैं
सेव पर क्लिक करें
कृपया सुनिश्चित करें कि फाइल को cpp एक्सटेंशन के साथ सेव किया गया है
मैंने अपनी फाइल को relationalसीपीप नाम से सेव किया है कोड को कंपाइल करें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें g relationalसीपीप स्पेस माइनस ओ स्पेस रेल1 एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें रेल1 और एंटर दबाएँ
मैं आ के लिए 8 और ब के लिए 3 प्रविष्ट करता हूँ
आउटपुट प्रदर्शित होता है हम देखते हैं कि आउटपुट सी कोड के आउटपुट के समान है
अब उस एरर को समझते हैं जो आ सकती है
प्रोग्राम पर वापस आएं
मानिए कि यहाँ हम डबल इक्वल चिन्ह को सिंगल इक्वल चिन्ह से बदलते हैं
सेव पर क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
यहाँ हम देखते हैं कि यह प्रदर्शित कर रहा है 3 इस इक्वल टो 3
अपने प्रोग्राम पर वापस आएं
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हमने एक असाइनमेंट आपरेटर का उपयोग किया है
अतः ब की वेल्यू आ में निर्दिष्ट की जाती है
अब इस एरर को फिक्स करें
एक इक्वल टो चिन्ह टाइप करें
सेव पर क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस आएं
पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें
अब आउटपुट सही है
इस ट्यूटोरियल को सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे लेस थान से कम जैसे आ ब लेस थान ओर इक्वल टो से कम या बराबर जैसे ab ग्रेटर थान ओर इक्वल टो से अधिक या बराबर जैसे ab इक्वल टो के बराबर जैसे ab नोट इक्वल टो के बराबर नहीं जैसे ab एक नियत कार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जिसमें इनपुट के रूप में तीन छात्रों के अंक हों
किस छात्र ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं यह देखने के लिए अंकों की तुलना करें
यह भी जांचें कि क्या दो या अधिक छात्रों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलता है जो एक ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद